और एक राखी वाला भी बैठ के बेच रहा है उस का दुकान दिखाई दे रही--

लोहे के खंभा भी नजर आ रहा है। बिजली के तार भी दिखाई दे रहे--

और यहां दो आदमी दीवार पर--

यहां कई दुकाने खुली हुई है।

और मरम्मत की तैयारी --

यहां बहोत सारे घर नजर आ रहे हैं।

इसमें बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक ढाबा सा भी दिखाई दे रहा है।

यहां एक्स रे वगैरा खींचते हैं।

एक बोरड भी लगा हुआ है।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

और यहा टेंपो भी चलते दिखाई दे रहे है।

येह बहोत सुंदर होटल दिखाई दे रहा हैं।

यहां बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं।

कंप्यूटर में काम कर रहें औरतें और आदमी--

यहां बहुत सारा पानी भरा पड़ा है।

यहां खाली रोड नजर आ रहा है।

पटरी सब सामान खादी का बनता है।

और यहां बहोत सारे आदमी और औरतें खड़ी दिखाई दे रही हैं।